सीढियाँ बनाई गई है ऊपर झंडा लगा हुआ है अगल-बगल और भी कई मंदिर है कुछ लोग नीचे खड़े हैं।

इसके अगल-बगल टीन की छावनी नज़र आ रही है।